मूर्ति रखा गया है उसमें बुद्ध भगवान का भी मूर्ति है।

यह एक पुस्तकों का दुकान दिख रहा है जिसमे --